छोटा डाइनिंग टेबल बना हुआ है।

यह एक पब दिख रहा है।

वही बाहर बोर्ड पे लिखा है चाइनीज थाई कॉन्टिनेंट --

ये एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

ट्रेन ग्रीन और ब्लू कलर है।

ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज बनाया गया है।

साइड में प्लांट्स लगे हुए है।

वहीं पे लाइट्स दिख रहीं हैं।

वही कुछ होटल का स्टाफ बाहर खड़ा हुआ--

ये एक जिम दिख रहा है।

जिम येलो कलर के आउटलाइन से बना है।

नदी में एक पत्थर रखा हुआ है।

ये एक ड्राई क्लीनर्स की दुकान है।

वहीं एक आदमी अंदर प्रेस कर रहा--

जहां पे बहोत सारे एक्वेरियम रखे हैं।

लगे हुए हैं वहीं पे एक कुलर रखा हुआ--

इसको क्रीम और ब्राउन कलर से पेंट किया--

वही टोस्ट बिस्किट खारी रखे हुए हैं।

मारुति वैन को पूरा सरफ से धोया जा रहा--

जहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक ऑटो सर्विस का दुकान है जहाँ पे लिखा है।

ये एक नदी दिखाई दे रही है।

इस दुकान में बहोत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में ब्लू कलर का टॉली भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक लड़की ने पीली शर्ट पहनी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल रखे हुए हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं।

काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।